यह पे कुछ स्कूटर और बाइक भी मुझे नज़र आ रहे हैं और आस पास हरे भरे पेड़ पौधे और झाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

इनके सामने मुझे एक ग्राउंड नज़र आ रहा है। जहां पर बहोत सारी हरि भरी घास लगी हुई है और यहां पर मुझे छोटे छोटे और बड़े बड़े पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे --

आपके साथ में मुझे हरी भरी घास और कुछ मिट्टी नजर आ रही है यहां पे मुझे एक बोड भी न दिखाई दे रहा है।

यहां पे मुझे फ्रीजर नजर आ रहा है जिनमें फेंटा कोकोकोला और यहां माजा कि बॉटल रखी हुई है और बाकी जगह खाने पीने का सामान रखा हुआ है।

इसे पत्थरों से घेरा गया है आसपास मुझे छोटी छोटी घास और हरे भरे--

इस तस्वीर में मुझे एक लाइब्रेरी नजर आ रही है जहां पे बहोत सारी लाइब्रेरी की बुक्स रखी हुई है।

यहां पे मुझे कुछ ये टेबल और चेयर्स भी दिखाई दे रहे--